यह एक मिठाई की शॉप दिख रही है इसमें नमकीन दिख रहा है।

यलो लाइट येलो कलर का पेंट है रेड कलर का पेंट और वाइन कलर का पेंट मारा है ग्रील लगी हुई है।

और पिज़्ज़ा का पोस्टर बराबर में दिख रहा है।

और झाड़ दिख रहे है और कुछ सूखे झाड़ दिख रहे--

और एक आदमी खड़ा है देख रहा है और कांच लगे हुए हैं।

ट्रीज दिख रही हैं और टेबल दिख रही हैं लाल कलर --

देखा गया है एक आदमी जाता हुआ दिखाई दे रहा है नीला आसमान दिख रहा है और बहुत दूर दूर तक --

निचे स्कूटी बाइक्स दिख रही हैं एक गाड़ी दिखाई दे रही है।

जिम का डेकोरेट ब्लैक कलर से किया गया है खिड़की दिख र --

और हाथ स्प्रे करने वाले रखे गए हैं और नीला कलर का एक बॉक्स दिख रहा है।

पीछे और गमले लगाए गए हैं शो पीस वाले।

सामने पेड़ दिख रहें पहाड़ दिख रहा नीला आसमान दिख रहा है।

टंबलड्राई लिखा हुआ है और यहां--

लॉन्ड्री ड्राई क्लीन लिखा हुआ है जिसका मोबाइल नंबर एट जीरो --

और एक गाड़ी खड़ी है एक स्कूटी दिख रही है।

यह एक छत बनाया जा रहा है जिसमें छे आदमी काम करते हुए दिखाई दे रहे है।

सरिया दिख रहा है पीछे बहुत सारा ग्राउंड दिख रहा है बहुत बड़ा।

यह एक वॉटर फॉल जैसा लग रहा है आजू बाजू पत्थर है बीच में से पानी बह रहा है।

एक आदमी खड़ा है और एक पेड़ दिख रहा है और पत्थर में बहुत सारे--

यह एक शॉप दिख रही है जिसका नाम सैमसंग है।

मोबाइल की शॉप है यह और दो स्कूटी हैं।

यह एक फूलों की दुकान दिख रही है जिसमें गजरे लगाए गए हैं गजरे में व्हाइट कलर --

फूल दिख रहे हैं और एक आदमी दिख रहा है।

झुका हुआ फोटो खींचा रहा है और एक फोटो खींच रहा है।

और वाइट कलर स स से दिवाल पेंट की गई है विंडोज दिख रहे हैं।

मंदिर दिख रहा है पेड़ दिख रहे है बिल्डिंग दिख रही है और नीला आसमान दिख रहा --

एक वाइट कलर की बै बोर्ड दिख रहा है एक ब्लैक कलर का बोर्ड दिख रहा है।